है यहां देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग।

पहाड़ के ऊपर बादल बहोत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे--

का बहोत बड़ा गेट नजर--

यहाँ लोहे का बना हुआ नजर आ--

थे यह दिखने मे बहोत ही--

के यहां देखने में बहोत ही ज्यादा अच्छा लग--

इस इमेज में मुझे एक बहोत ज्यादा बड़ा--

बहोत ज्यादा बड़ी दुकान दिख रही--

इस इमेज में मुझे एक--

बहोत बड़ी स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही--

इस इमेज में मुझे एक बोहत बड़ी--

एक बहुत बड़ा इंजन दिखाई दे रहा--

और यह देखने में बहोत ज्यादा बड़ी लग रही--

मुझे एक बहुत ज्यादा बड़ी--